मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है
छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गाँव अपने घर अपने परिवार के बीच पहुँचे हैं
मेरी प्रार्थना है कि छठ मइया सबकी समृद्धि सबके कल्याण का आशीर्वाद दें
साथियो सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है
इस पूजा के जरिये हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है
साथ ही ये सन्देश भी दिया गया है कि उतारचढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है
इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए
छठ मइया की पूजा में भांतिभांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है
इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता
छठ पूजा की एक और ख़ास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं
इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है
मिट्टी के दीयों का अपना महत्व होता है
इसके जरिये चने की पैदावार करने वाले किसान और बताशे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है
इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती
छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है
इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क नदी घाट पानी के विभिन्न स्त्रोत सबकी सफाई की जाती है
छठ का पर्व एक भारतश्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है
आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं वहाँ धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है
दिल्ली मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलगअलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है
मुझे तो याद है पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी
लेकिन समय के साथ आज करीबकरीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नज़र आने लगे हैं
ये देखकर मुझे भी बहुत ख़ुशी होती है
आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं
यानी भारत की समृद्ध विरासत हमारी आस्था दुनिया के कोनेकोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है
इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ़ से बहुतबहुत शुभकामनाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो अभी हमने पवित्र छठ पूजा की बात की भगवान सूर्य की उपासना की बात की
तो क्यों न सूर्य उपासना के साथसाथ आज हम उनके वरदान की भी चर्चा करें
सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा
सोलार एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं
भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं
सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है वो भी अध्ययन का विषय है
तमिलनाडु में काँचीपुरम में एक किसान हैं थिरु के एझिलन
इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में दस हॉर्सपावर का सोलार पम्प सेट लगवाया
अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है
खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं हैं
वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमलजी मीणा
कमलजी ने खेत में सोलार पम्प लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है
लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई
कमलजी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं
उनके इलाके में लकड़ी का काम है गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो 1012 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं यानी कुसुम योजना से कमलजी ने जो शुरुआत की उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुँचने लगी है
साथियो क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिलें सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है
आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्य ग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी
मोढेरा सूर्य ग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं
अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है
ये होता देख अब देश के बहुत से गावों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्य ग्राम में बदला जाए यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जनांदोलन बनेगा और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं
आइये मन की बात के श्रोताओं को भी मोढेरा के लोगों से मिलवाते हैं
हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं श्रीमान् विपिन भाई पटेल
विपिन भाई नमस्ते देखिये अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडेल के रूप में चर्चा में आ गया है
लेकिन जब आपको अपने रिश्तेदार परिचित सब बातें पूछते होंगे तो आप उनको क्याक्या बताते हैं क्या फायदा हुआ
सर लोग हमारे को पूछते है तो हम कहते हैं कि हमें जो बिल आता था लाइट बिल वो अभी जीरो आ रहा है और कभी 70 रूपए आता है पर लेकिन हमारे पूरे गाँव में जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधर रही है
यानी एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खत्म हो गई
हाँ सर वो तो बात सही है सर
अभी तो कोई टेंशन नहीं है पूरे गाँव में
सब लोगों को लग रहा है कि सर ने जो किया तो वो तो बहुत अच्छा किया
वो खुश है सर
आनंदित हो रहे है सब
अब अपने घर में ही खुद ही बिजली का कारखाना के मालिक बन गए
खुद का अपना घर के छत पर बिजली बन रही है
हाँ सर सही है सर
तो क्या ये बदलाव जो आया है उसकी गाँव के लोगों पे क्या असर है
सर वो पूरे गाँव के लोग वो खेती कर रहे हैं तो फिर हमारे को बिजली की जो झंझट थी तो उसमें मुक्ति हो गई है
बिजली का बिल तो भरना नहीं है निश्चिन्त हो गए हैं सर
मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविधा बढ़ गई
झंझट ही गया सर और सर जब आप यहाँ आये थे और वो 3D शो जो यहाँ उदघाटन किया तो इसके बाद तो मोढेरा गाँव में चार चाँद लग गए हैं सर
और वो जो सेक्रेटरी आये थे सर
तो वो गाँव फेमस हो गया सर
जी हाँ उन के सेक्रेटरी जनरल उनकी खुद की इच्छा थी
उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि भई इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ
चलिए विपिन भाई आपको और आपके गाँव के सब लोगों को मेरे तरफ़ से बहुतबहुत शुभकामनाएं और दुनिया आप में से प्रेरणा ले और ये सोलार एनर्जी का अभियान घरघर चले
वो हम सब लोगों को बताएँगे सर कि भई सोलर लगवाओ आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है
हाँ लोगों को समझाइये
चलिए बहुतबहुत शुभकामनाएं
धन्यवाद भैया
थांक यू सिर थांक यू सिर मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके
विपिन भाई का बहुतबहुत धन्यवाद
आइये अब मोढेरा गाँव में वर्षा बहन से भी बात करेंगे
हेलो नमस्ते सर
नमस्तेनमस्ते वर्षाबेन
कैसी हैं आप
हम बहुत अच्छे हैं सर
आप कैसे हैं
मैं बहुत ठीक हूँ
हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके
अच्छा वर्षाबेन
आप मोढेरा में आप तो एक तो फौजी परिवार से है
मैं फौजी परिवार से हूँ मैं
आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर
तो पहले हिंदुस्तान में कहांकहां जाने का मौका मिला आपको
मुझे राजस्थान में मिला गाँधी नगर में मिला कचरा कांझोर जम्मू है वहां पर मिला मौका साथ में रहने का
बहुत सुविधा वहां पर मिल रही थी सर
ये फौज में होने के कारण आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो
हाँहाँ
सीखा है सर हाँ
मुझे बताइये मोढेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया ये सोलार रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया
जो शुरू में लोग कह रहे होंगें तब तो आपको मन में आया होगा ये क्या मतलब है क्या कर रहे हैं क्या होगा ऐसे थोड़ी बिजली आती है ये सब बातें हैं कि आपके मन में आई होगी
अब क्या अनुभव आ रहा है इसका फायदा क्या हुआ है
बहुत सर फायदा तो फायदा ही फायदा हुआ है सर
सर हमारे गाँव में तो रोज दीवाली मनाई जाती है आपकी वजह से
24 घंटे हमें बिजली मिल रही है बिल तो आता ही नहीं है बिलकुल
हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक सब चीज़ें घर में ला रखी हैं सर सब चीज़ें उसे कर रहे हैं आपकी वजह से सर
बिल आता ही नहीं है तो हम फ्री माइंड से सब उसे कर सकते हैं न
ये बात सही है आपने बिजली का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी मन बना लिया है
बना लिया सर बना लिया
अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है हम फ्री माइंड से सब ये जो वाशिंग मशीन है एसी है सब चला सकते हैं सर
और गाँव के बाकी लोग भी खुश हैं इसके कारण
बहुतबहुत खुश हैं सर
अच्छा ये आपके पतिदेव तो वहाँ सूर्य मंदिर में काम करते हैं तो वहां जो वो लाइट शो हुआ इतना बड़ा इवेंट हुआ और अभी दुनियाभर के मेहमान आ रहे हैं
दुनियाभर के फोरिग्नर्स आ सकते हैं पर आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गाँव को
तो आपके पति को अब काम बढ़ गया होगा इतने मेहमान वहाँ मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं
अरे कोई बात नहीं जितना भी काम बढ़े सर कोई बात नहीं इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पति को बस आप विकास करते जाओ हमारे गाँव का
अब गाँव का विकास तो हम सबको मिलकर के करना है
सर हम आपके साथ हैं
और मैं तो मोढेरा के लोगों का अभिनन्दन करूँगा क्योंकि गाँव ने इस योजना को स्वीकार किया और उनको विश्वास हो गया कि हाँ हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं
24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं
चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं
जो पैसे बचें हैं इसका बच्चों की भलाई के लिए उपयोग कीजिये
उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जीवन को फायदा हो
मेरी आपको बहुत शुभकामनाएँ है
और सब मोढेरा वालों को मेरा नमस्कार
साथियो वर्षाबेन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे देश के लिए गांवोंशहरों के लिए एक प्रेरणा है
मोढेरा का ये अनुभव पूरे देश में दोहराया जा सकता है
सूर्य की शक्ति अब पैसे भी बचाएगी और आय भी बढ़ाएगी
जम्मूकश्मीर के श्रीनगर से एक साथी हैं मंजूर अहमद लर्हवाल
कश्मीर में सर्दियों के कारण बिजली का खर्च काफी होता है
इसी कारण मंजूर जी का बिजली का बिल भी 4 हजार रूपए से ज्यादा आता था लेकिन जब से मंजूर जी ने अपने घर पर सोलार रूफटॉप प्लांट लगवाया है उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है
ऐसे ही ओडीशा की एक बेटी कुन्नी देउरी सौर ऊर्जा को अपने साथसाथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही हैं
कुन्नी ओडीशा के केन्दुझर जिले के करदापाल गांव में रहती है
वो आदिवासी महिलाओं को सोलार से चलने वाली रीलिंग मशीन पर सिल्क की कताई की ट्रेनिंग देती हैं
सोलार मशीन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी हो रही है
यही तो सूर्य देव की सौर ऊर्जा का वरदान ही तो है
वरदान और प्रसाद तो जितना विस्तार हो उतना ही अच्छा होता है
इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है आप भी इसमें जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें
मेरे प्यारे देशवासियो अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था
अब मेरा ध्यान स्पेस की तरफ जा रहा है
वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलार सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है
पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियाँ देखकर हैरान है
इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढाऊँ
साथियो अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है
दीवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशियल दीवाली गिफ्ट है
इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी
इसकी मदद से बेहद दूरदराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे
देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊँचाई पर पहुँचता जाता है ये इसका भी एक उदाहरण है
आपसे बात करते हुए मुझे वो पुराना समय भी याद आ रहा है जब भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था
लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है आई इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं
साथियो विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देशसबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है आई भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था आई जब ये स्पेस सेक्टर भारत के युवाओं के लिए भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे हैं आई भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नएनए इनोवेशंस और नईनई टेक्नोलॉजीज लाने में जुटे हैं
विशेषकर इंस्पेस के सहयोग से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है आई
इंस्पेस के जरिए गैरसरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोड्स और सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा मिल रही है
मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और इनोवेटर से आग्रह करूँगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहे इन बड़े अवसरों का पूरा लाभ उठाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो जब स्टूडेंट्स की बात आए युवा शक्ति की बात आए नेतृत्व शक्ति की बात आए तो हमारे मन में घिसीपिटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गयी है आई कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पॉवर की बात होती है तो इसको छात्रसंघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है
लेकिन स्टूडेंट पॉवर का दायरा बहुत बड़ा है बहुत विशाल है
स्टूडेंट पॉवर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है
आखिर आज जो युवा हैं वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे
जब भारत शताब्दी मनायेगा युवाओं की ये शक्ति उनकी मेहनत उनका पसीना उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊँचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है
हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूँ
जिस तरह हमारे युवा हैकॉथॉंन्स में प्रोब्लेम सोल्व करते हैं रातरात भर जागकर घंटों काम करते हैं वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है
बीते वर्षों में हुई एक हैकॉथॉंन्स ने देश के लाखों युवाओं ने मिलकर बहुत सारे चैलेंज को निपटाया है देश को नए सोल्यूशन दिए हैं
साथियो आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था
मैनें इस दशक को भारत का टेक्ड बनाने की बात भी कही थी
मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा इसकी कमान हमारी आईआईटीएस के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है आई इसी महीने 1415 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीएस अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए
इस मेले में देशभर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया
हेल्थकेयर एग्रीकल्चर रोबोटिक्स सेमीकंडक्टर्स 5G कम्यूनिकेशंस ऐसी ढ़ेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे आई वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
जैसे ईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटीलेटर विकसित किया है
यह बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है
ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो 5G हो हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं
कई सारी आईआईटीएस मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं जो स्थानीय भाषाओँ को सीखने के तरीक़े को आसान बनाता है
ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा
आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि ईआईटी मद्रास और ईआईटी कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेद को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है
निश्चित रूप से यह एक शानदार शुरुआत है आई मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे आई मुझे यह भी उम्मीद है कि आईआईटीएस से प्रेरणा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे
मेरे प्यारे देशवासियो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारे समाज के कणकण में समाहित है और इसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं
देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं
कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है
20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकारनगर के एक जंगल को फिर से हराभरा करने का बीड़ा उठाया था आई ये काम मुश्किलों से भरा था लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 4040 फीट ऊँचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं आई अब इनकी सुन्दरता हर किसी का मन मोह लेती है
इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है
सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं
उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकारनगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है
वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट्स भी भेंट कर चुके हैं
इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथसाथ आगे बढें और फलेंफूलें सोचिएयह कितनी बड़ी बात है
साथियो आज इकोफ्रेंडली लाइविंग और इकोफ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूकता दिख रही है
मुझे तमिलनाडु के एक ऐसे ही दिलचस्प प्रयास के बारे में भी जानने का मौका मिला
ये शानदार प्रयास कोयंबटूर के अनाईकट्टी में आदिवासी महिलाओं की एक टीम का है
इन महिलाओं ने निर्यात के लिए दस हजार इकोफ्रेंडली टेराकोटा टीईए कप्स का निर्माण किया
कमाल की बात तो ये है की टेराकोटा टीईए कप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने खुद ही उठाई
क्ले मिक्सिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक सारे काम स्वयं किए
इसके लिए इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था
इस अद्भुत प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है
साथियो त्रिपुरा के कुछ गाँवों ने भी बड़ी अच्छी सीख दी है
आप लोगों ने बायोविलेज तो जरुर सुना होगा लेकिन त्रिपुरा के कुछ गाँव बायोविलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं
बायोविलेज 2 में इस बात पर ज़ोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए
इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है
सोलार एनर्जी बायोगास बी कीपिंग और बियो फर्टिलाइजर्स इन सब पर पूरा फोकस रहता है
कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायोविलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है
मैं देश के अलगअलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूँ
कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है
मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवनशैली ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए
मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए उसे अपनाने का प्रयास कीजिये
साथियो कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मजयन्ती का पुण्य अवसर है
इस दिन देश के कोनेकोने में रुन फोर यूनिटी का आयोजन किया जाता है
ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है हमारे युवाओं को प्रेरित करती है
अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है
जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहाँ एकता का मजबूत सन्देश दिया वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है
आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था
इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया जिसमें 7 नई और दो स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मल्लखम्ब भी शामिल रही
गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो तीन टीमें रहीं वे हैं सर्विसेस की टीम महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम
इन खेलों में छह नेशनल रेकॉर्ड्स और करीबकरीब 60 नेशनल गेम्स रेकॉर्ड्स भी बने
मैं पदक जीतने वाले नए रेकॉर्ड बनाने वाले इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मैं इन खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य की कामना भी करता हूँ
साथियो मैं उन सभी लोगों की भी ह्रदय से प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया
आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रीय खेल नवरात्रि के दौरान हुए
इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार तो मेरे मन में भी आया कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है तो लोग इन खेलों का आनंद कैसे ले पाएँगे इतनी बड़ी व्यवस्था और दूसरी तरफ नवरात्रि के गरबा वगैरह का इंतजाम
ये सारे काम गुजरात एकसाथ कैसे कर लेगा लेकिन गुजरात के लोगों ने अपने आतिथ्यसत्कार से सभी मेहमानों को खुश कर दिया
अहमदाबाद में नेशनल गेम्स के दौरान जिस तरह कला खेल और संस्कृति का संगम हुआ वह उल्लास से भर देने वाला था
खिलाड़ी भी दिन में जहाँ खेल में हिस्सा लेते थे वहीं शाम को वे गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे
उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्रि की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर कीं
यह देखना हम सभी के लिए बहुत ही आनंददायक था
आखिरकार इस तरह के खेलों से भारत की विविध संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है
ये एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो नवम्बर महीने में 15 तारीख को हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा
आपको याद होगा देश ने पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयन्ती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुआत की थी
भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था
उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था
ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं
साथियो जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है छोटे से उनके जीवन काल की तरफ़ नज़र करते हैं आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं और धरती आबा ने तो कहा था यह धरती हमारी है हम इसके रक्षक हैं
उनके इस वाक्य में मातृभूमि के लिए कर्तव्य भावना भी है और पर्यावरण के लिए हमारे कर्तव्यों का अहसास भी है
उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है उससे रत्तीभर भी दूर नहीं जाना है
आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं
साथियो पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुझे रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम Museumके उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था
मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरुर जाएँ
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक नवम्बर यानी परसों मैं गुजरातराजस्थान के बॉर्डर पर मौजूदा मानगढ़ में रहूँगा
भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है
यहाँ पर नवम्बर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी
बताया जाता है कि इस नरसंहार में एक हजार से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी
इस जनजातीय आन्दोलन का नेतृत्व गोविन्द गुरु जी ने किया था जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है
आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविन्द गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूँ
हम इस अमृतकाल में भगवान बिरसा मुंडा गोविन्द गुरु और अन्य स्वातंत्र सेनानियों के आदर्शों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे हमारा देश उतनी ही ऊँचाइयों को छू लेगा
मेरे प्यारे देशवासियो आने वाली 8 नवम्बर को गुरुपुरब है
गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है
गुरु नानकदेव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश फैलाया
पिछले कुछ वर्षों में देश ने गुरुओं के प्रकाश को जनजन तक पहुँचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं
हमें गुरु नानकदेव जी का 550वाँ प्रकाश पर्व देश और विदेश में व्यापक स्तर पर मनाने का सौभाग्य मिला था
दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण होना भी उतना ही सुखद है
कुछ दिन पहले ही मुझे हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है
हमें हमारे गुरुओं के विचारों से लगातार सीखना है उनके लिए समर्पित रहना है
इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी है
इस दिन हम तीर्थों में नदियों में स्नान करते हैं सेवा और दान करते हैं
मैं आप सभी को इन पर्वों की हार्दिक बधाई देता हूँ
आने वाले दिनों में कई राज्य अपने राज्य दिवस भी मनाएंगे
आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा केरला पिरावि मनाया जाएगा
कर्नाटका राज्योत्सव मनाया जाएगा
इसी तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी अपने राज्य दिवस मनाएंगे
मैं इन सभी राज्यों के लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ
हमारे सभी राज्यों में एक दूसरे से सीखने की सहयोग करने की और मिलकर काम करने की स्पिरिट जितनी मजबूत होगी देश उतना ही आगे जाएगा
मुझे विश्वास है हम इसी भावना से आगे बढ़ेंगे
आप सब अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए
मन की बात की अगली मुलाक़ात तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिये
नमस्कार धन्यवाद